यहाँ रोड पे बहुत सारे आदमी जा आ रहें हैं और टोटों भी जा रहा है उसपे आदमी बहुत बैठे हैं और बाइक भी है और उधर एक लंबे जइसन --